पेड़ है कुछ हरे कलर के--

मोटरसाइकल हैं एक आदमी अंदर बैठा हुवा हैं।

एक आदमी है जो रेड कलर वाले आदमी को पहने हुए ड्रेस का गाइड कर रहा है कि कैसे क्या करना है।

कुछ लिखा हुआ सोनी टाइप मे है।